ये गैरेज है इसमें बिगड़ा-बिगड़ा हुआ गाड़ियां आते है और ऐसे अच्छी तरह से बनाई जा --

डिस्काउंट भी मिलते है इसमें नमक चीनी मसाले ये सब सब रहते है।

कई फूल भी फ्लावर्स भी है रंग-बिरंगो का गेंदा का भी फूल है और --

रंग भी गिरा हुआ है।

और छड़ भी है।